पछे लखावि है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है और एक चेयर रखी हुए है जो बोहोत अच्छी लग रही है सफेद कलर की नीचे टाइल्स भी लगे हुए है बोहोत सुंदर दिखाई दे रहा--

स्कूल है जो जिस के चारों तरफ बॉन्डरी खिची हुई है और इस स्कूल सफेद कलर का पुता हुआ है बोहोत अच्छा लग रहा है और चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जो बोहोत हरे भरे है।